पीले कलर का कुर्सी है कुर्सी खड़े हैं। टू व्हीलर है। एक हाउस है जो पानी वहा पे उसपे मग रखा है।

कुछ कांच की तरह है उसपे एक फूल की तरह दिखाई दे रही है और एक कुर्सी है जो खाली कुर्सी है मौसम साफ है।

यहां पे चेयर कुर्सी हैं जो बड़े बड़े सोफा सेट जो वाइट और--

सुनहरी कलर गोल्डन कलर जो भी है चार पांच आदमी ठहरे हुए हैं।

और यहां पे हुआ बड़ा बैलून दिख रहा है।

यह एक सोसाइटी है जो घर है बहुत ही आलीशान खूबसूरत--

यहाँ पे टेबल बनाया जा रहा है लकड़ियों का जो यहाँ पे मशींस हैं।

ये एक पार्क है। टू पार्क नाम है इसका और यहां पे ना हिरन को दिखाया गया है जो स्टेच्यू का है।

उसका दरवाजा खुला हुआ है और यहां पे अंदर पानी और पौधे नजर आ रहे हैं हरियाली नजर आ रही है।

कलर है वाइट कलर और यहाँ पे नाइट भी है उनके पेरेंट्स भी पीछे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं।

ये तो हरे हरे बड़े बड़े झाड़ नजर आ रहे हैं और जो टॉवर हैं जो लाइट सप्लाई करने का --

कुर्सी है जो यहां पे बैठा जाता है एक लैपटॉप है जो चालू है और एक ऊपर साइड जो फर्नीचर का काम किया गया है जो खाने बनाए हुए है।